यहा दो बॉयज दिखाई दे रहे है अँड अ डंबल दिखाई दे रहे है यह एक जिम दिखाई दे रही है।

वहा एक ए_टी_एम दिखाई दे रहा है यहाँ काफी लोग दिखाई दे रहे है एक बाइक दिखाई दे रही है रेड कलर की एक डिक्की दिखाई दे रही है साइकलवाला ठेला दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर दिखाई दे रही है कुछ लोग दिखाई दे रहे है।

यहाँ एक यहा एक पूल दिखाई दे रहा है कुछ लोग दिखाई दे रहे है रोड दिखाई दे रही है एक वो चार्ट दिखाई दे रहा है।

यहा पर कुछ बच्चे दौड़ते हुए दिखाई दे रहे है।

यहाँ एक शॉप दिखाई दे रही है कुछ बच्चे दिखाई दे रहे है कुछ फॅन दिखाई दे रहे है कुछ साइकिल दिखाई दे रही है मोटर सायकले दिखाई दे रही है।

व्हाइट कलर का एक चादर दिखाई दे रहा है हरे पेड़ दिखाई दे रहे है।

कुछ सिडिया दिखाई दे रही है रेड कलर की कुछ टेबल दिखाई दे रहा है ग्रीन पेड़ दिखाई दे रहे है खुला आसमान दिखाई दे रहा --

यहाँ पर कुछ गर्ल्स दिखाई दे रही है एक व्हाइट पिंक और ब्लु कलर का टेंट दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर की तारपट्टी दिखाई दे रही है।

पेड़ दिखाई दे रहे है। मोबाईल फोन दिखाई दे रहा है। एक रेड कलर की साड़ी दिखाई दे रही है। टोकनी दिखाई दे --

यहाँ पर एक गर्ल दिखाई दे रही है कुछ पानी दिखाई दे रहा है अँड एक के पाइप दिखाई दे रहा है छोटा व्हाइट कलर की बाउंड्री दिखाई दे रही है।